नीचे लंबी लंबी कुछ मूर्तियां दिख रही हैं।

यह एक शॉप है जिसमें बहुत सारे कुकीज मैग्गीज अं--

यह एक घर है ये घर का गेट है।

तारे वगैरा दिख रही हैं और सामने एक सड़क भी दिख रही है।

बड़ी सी बिल्डिंग है सामने कुछ--

यह एक मेला है जिसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

और एक परसन जाता हुआ दिख रहा है।